यहां पर देखिए आपको उम्ब्रेल उम्ब्रेला दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे पोस्टर दिखाई दे रहे बिल्डिंग का कलर व्हाइट और सबसे ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ ऊपर एक कौवा उड़ा रहा है फिर कोई शौप हे।

एकी आपको एक पोस्ट दिखाई दे राहा होगा नीचे आपको आ एक बहुत बड़ा शीशा दिखाई दे रहा होगा यहां पे कुछ सबजिया रखी हुई बहुत सारी बहुत सारे पोस्टर्स टंगे हुए बहुत सारे लोग हे यहां पे।

देखिये यहां पर बोट पे एक अंकल खड़े हैं जिन्होंने एक लंबा डंडा लिये रखा हुआ है यहां पे देखीये बहुत सारा पानी भरा हुआ है।

यहां पर देखिए आपको राजस्थान में नदी दिखाई दे रही होगी ईहा पे देखिए आपको कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे होंगे यहां पे देखिए एक रोड है देखिए यहां पे एक आन अंकल खड़े जिन्होंने।